ये सब कुछ चीजें है सब बहुत तरह का लग रहा है जो की सब बनाया गया है लग रहा है।

ढेरी लोग हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में और नीला बहुत अच्छा लगता है देखने में और भीड़-भाड़ बहुत रहता है इसमें एक पेड़ भी है ढेर सारा पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ी इलाका लग रहा है।

और लग रहा है कोई हॉस्पिटल में अपना क्लिनिक खोला है घर ही में जो बहुत अच्छा लग रहा है देख के साफ़-सुथरा है सब कुछ और जीन्स है जो टी-शर्ट पहने --

ये दुकान है जो सब कुछ इसमें है कॉपी किताब बैग हर चीज का दुकान है पेन भी रखा गया है और सब कुछ इसमें न सब कुछ मिल जाएगा जो भी है स्कूल वाले सब कुछ इसमें सब मिल जाएगा बहुत अच्छा लग रहा है देख --

और ये पूरा है ना जो की बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के जगह को और एक सांप --

ये एक्सरसाइज एक लड़का कर रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है अपने शरीर को ध्यान दिया है और जो कि दो-तीन लोग खड़े हैं लोग ।